यहाँ पे कोट पैंट टाई बेल्‍ट से सुजीजित एवं --

कितनी स्‍पीड चलाओ उतनी चल सकती हैं ।

एक काला चड्ढा अ काला बनियान वाला आगे है और दो बालक पीछे क्रम से चल रहे हैं।

शेर की मूर्ति बनी हुई है उसके ऊपर --

जिस पर मनुष्‍य के लिए स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी सभी प्रकार की --

रंगा है उसके ऊपर सौर ऊर्जा की प्‍लेटें लगी हुई हैं ।

नाव में कुछ सामान लेकर एक व्‍यक्ति दूसरे व्‍यक्ति को पार कराता है ।

एवं अच्‍छे स्‍थान के लिए रखने के लिए उपलब्‍ध हैं ।

इस भवन में बैंक ऑफ बडौदा बैक स्थित है।

एक व्‍यक्ति टाल पत्‍थर का कार्य करता हुआ उसकी मापिग करता हुआ --

सभी के लिए सुविधा है।

इत्‍यादि रखे हुए है एवं एक साईकिल खड़ी हुई है | वह बहुत सुन्‍दर स्‍थान है ।

की जांच भी कराते हैं | इस रोग में योग्‍य डॉक्‍टर हैं ।

फूल बनाते हुए नज़र आ रही आती है लड़कियां वह बहुत सुन्‍दर लग रही हैं ।